इस चित्र के अंदर डामर रोड है।

एक नाव दिख रही है और भी नाव दिख रहे हैं।

बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और गेट के बाहर बहुत सारी एक्टिवा और बाइक्स खड़ी हैं और कार भी खड़े हुए दिख रहे हैं।

और ऊपर से नीचे तक रंग बिरंगे लाइटिंग --

ये चित्र के अंदर बहोत बड़े घर दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर की बिल्डिंग्स खड़ी है।

इस चित्र के अंदर एक कार खड़ी हुई है रोड के पास एक ट्रक खड़ी हुई है और बड़ी सी पेड़ दिख रही है।

इस चित्र के अंदर कांच से बने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है।

लोग पैदल जा रहे हैं और कुछ लोग खड़े भी हैं।

ऊपर दीवाल पर एक ए_सी लगी हुई है।

सीमेंट से बनी चेयर में कुछ लोग बैठे हुए हैं और ग्रीन कलर की गेट भी है।